जहां पर फोटोस लगे हैं सामने अस्पताल की--

पेड़ों की लकड़ियां काटकर फर्नीचर बनाते हैं।

यह इमेज यह इमेज एक तबले की है जिसे हम बजाते हैं और--

पोल्ट्री फार्म की है जहां लोग एयरटेल का लोगो लगा है और--

यह इमेज यह इमेज एक हॉस्पिटल की है जहाँ पर एक --

बहोत सारा सामान रखा है बहुत से प्रोडक्ट है।

यह इमेज एक भारत पेट्रोल की है जहां से टैंकर में से पेट्रोल खाली हो रहा है।

की इंस्ट्रूमेंट की दुकान ही है जहां पर--

बहुत अच्छी तरह बजते हैं ये--

लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही है बहोत सी कुर्सियां रखी है।

अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की है जहां पर--